झाड़ नजर आ रहा है दीवाल पर बोर्ड नजर आ रहा है

रात का समय है पीछे किसी थोड़े से पौधे झाड़ नजर आ रहा है परछाई नजर आ रही हैं आदमी की।

पेड़-पौधे नजर आ रहे है बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे है मिट्टी का ढेर लग रहा है थोड़ा सा और बच्चे खेल रहे है।

पेट्रोल पंप नजर आ रहा है एक आदमी है जो की साइकिल पर है बस नजर आ रही है पेट्रोल पंप नजर आ रही है।

दीवाल है अ एक रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है जिसमें एक फूल अ फूलों की दरवाजा है।

यह एक रेस्टोरेंट है जिसमे कटे हुए झाड़ है फैन लगे हुए है और कुछ कुर्सियां नजर आ रही है फ्लोर नजर आ रहा है।